ये किसी लैब की फोटो दिख रही है और ये साइड में एक मशीन रखी हुई है सइ दो तीन मशीन है।

देख सकते हैं आप पियानो बजाते हैं ब्लैक कलर का इसमें और वाइट कलर का कंबीनेशन है और साइड में लोग है ये--

ये एक डॉक्टर की दुकान है जिसमें ये क्या नाम है एक लेडिज बैठी हुई है।

और सीमेंट उमेंट मिलती है लगता है इसमें और अंदर लोग भी खड़े हुए हैं और घड़ी भी दिखाई दे रही है।

मिरर के साइड में भी लाइट दिखाई दे रही है और काफी डेकोरेट करे मिरर भी दिख रहे है बहोत अच्छे दिख रहे हैं।

और काफी क्लीन एरिया दिखाई दे रहा है सब कुछ सीक्वेंस वाइस जमा रखा है इसमें ब्लू कलर का स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर ये पहाड़ का भी एरिया दिखाई दे रहा है रेतीला एरिया एरिया है।